इसके पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है।

साथ में कट्टे भी दिखाई दे रहे हैं।

अंदर से एक अह और बच्चा आता हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक पार्क की दिखाई दे रही है।

और जो लोग बाल कटवाने आए हैं वे काली कुर्सी पर बैठे हैं।

कुछ लोग मोमबत्तियां जला रहे हैं।

यह तस्वीर किसी अह दिल्ली कॉलिंग सेंटर की लग रही है।

एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

फुव्वारे भी रखे हुए हैं एक छोटा सा मंदिर भी।

यह तस्वीर एक इंसान की दिखाई दे रही है यह आदमी पानी--

यह तस्वीर एक रोड की दिखाई दे रही है।

दुकान के सामने नीले रंग की टीन लगी हुई है।

सफेद बनियान में एक इंसान मजदूर भी दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक ट्रेन की दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक बैंक के आगे की है।

यहां पर लोग दारु पीने आते हैं ये रात का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी पहाड़ों के झरने की दिखाई दे रही है।

पहाड़ों के बीच में गंदगी भी फैली दिखाई दे रही है।